सैलून है। तीन-तीन कुर्सी है उधर से एक आदमी हैं और ऊपर पंखा है।

और अ कुरकुरे भी बोहत सारा बिस्कुट और चॉकलेट अ और --